बालू लोग घर बनाने में इस्तेमाल करते है।

ये एक बहुत घना पहाड़ है। यह पहाड़ बहुत ही बड़ा है। पहाड़ पर से बहुत दूर-दूर के लोग यहाँ पहाड़ पे घुमने फिरने के लिए इस जगह को देखने के लिए आते है।

ताज़ी मछली बेचने के लिए लाए गए हैं एक आदमी मछली खरीद रहा है।

सभी लोग बहुत ही मेहनत से काम में लगे हुए है बालू सीमेंट --

ये एक बाजार है यहाँ पे एक विशाल मेगा मार्ट मॉल है | यह मॉल में बहुत सारी चीजे सामाने मॉल में मिलती है ।